दिखाई दे रहे है स्टेज पर अ कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे रहे है एक आदमी स्टेज पर बैठा है और एक आदमी स्टेज पर खड़ा है जो माइक पर कुछ बोल रहा हैं ।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

और बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में घास लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ छोटे -छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है मैदान के बीच एक मिट्टी की बनी हुई जिस पर कुछ घास लगी हुई दिख--

ये एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर कुछ काँच के गिलास रखे हुए है कुछ चम्मच रखे हुए है दो पानी के बोतल रखे हुए दिखाई दे रही है कुछ टिस्सु पेपर रखे हुए है दिखाई --

ये एक बिल्डिंग बनी हुई है दिखाई दे रही है जिसमें शिवमुरली सेंटर राजपुर लिखा हुआ है और इसमें शटर लगी हुआ है शटर बंद है एक लोहे का दरवजा लगा हुआ है एक खिड़की बनी हुई हैं ।